कपड़े वाले का बहोत बड़ा-बड़ा दाढ़ी है कपड़े वाला मोबाइल यूज कर रहा है बहोत सारे रंग-बिरंगे कपड़े है जैसे सलवार समीज।

यह एक फल का दुकान है जो कि दिखने मे बोहोत अच्छा लग रहा है। यहाँ बोहोत सारे फल है।

ये एक मेला है जो कि बोहोत बड़े मैदान में लगा हुआ है जो कि दिखने मै बोहोत सुंदर लग रहा है। यहाँ हरे-भरे पेड़-पौधे है जो कि और सुंदर लग रहा है दिख दिखने में ।

यह एक चिड़िया घर है जो की दिखने मे बहुत ही सुन्दर लग रहा है चिड़िया घर में बहुत सारे पशु पक्छी है।

इसमें इमारते मे बोहोत सारे कमरे हैं।

बोहोत सारे खिड़कियाँ-दरवाजें हैं। इमारतें के आस-पास छोटी-बड़े पेड़-पौधे हैं जो कि देखने में और आकर्षित लग रहा है।

यहाँ एक मंदिर है जो कि दिखने में बोहोत सुंदर लग रहा है। मंदिर के आस-पास बोहोत सारे बेग बगीचे हैं जो कि मंदिर को दिखाने में और आकर्षित कर रहा है।